बाइक है लोग हैं टास्क हैं लाइटिंग है गेट है बाउंड्री है।

चर्च है खिड़कियां है रिबनस है रस्सी है पेड़ पौधे हैं।

लाइट है वैटिंग एरिया है टी. वी. है पैक्स है लोग है।